का कलर लाल है और इसके टायर बहुत ही ज्यादा है।

साइड पे व्हाइट कलर की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

यह एक बहोत ही अच्छे होटल रेस्टोरेंट की फोटो लग रही है होटल रेस्टोरेंट में --

यह एक मेले की फोटो है।

पीले रंग की यह क्रेन के आगे बहुत ही बड़ा मिट्टी उठाने वाला--

गॉड से अपनी विश मांगते हैं और गॉड उनकी विश पूरी भी करते हैं।

यह एक बच्चों का प्लेग्राउंड है किसी सोसाइटी में ये एक बच्चों का प्लेग्राउंड है।

यहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर फोटोज लगी हुई है यह बहोत पुराने समय का परक माना जाता है।

यह एक सब्जी की शॉप है जहां पर तरह तरह की सब्जियां रखी गई हैं।

चाहे खेतों में या फिर घर पर भी पानी का इस्तेमाल कर सकते--

ये सब्जी मंडी की पिक है यहां पर अ बोरियों में ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां रंग बिरंगी सब्जियां--

ये एक किसी भी मेले का इवेंट का फोटो लग रहा है।

फ्लावर्स और तरह तरह के बूटे--

जब बारिश आती है तो ये वृक्ष बहोत धुले हुए सुंदर लगते हैं।

इधर एक ऑटो वाले रिक्शा वाले खड़े हुएं हैं।

और डीयर्स ग घूम रहे हैं हिरन बहुत ज्यादा हैं।

ग्रीनरी बहोत जादा है वृक्ष बहोत ज्यादा है।

साइड पर एक रोड भी जा रही है।

अह टायर्स मिलते हैं एम_आर_एफ कंपनी का टायर बहुत ही अच्छा होता है।

एक लड़का ग्राउंड में खेल रहा है और--